एक होडिंग पे लिखा हुआ है स्कूटर से ज्यादा--

और एक हॉल में बहुत सारे स्कूटर्स खड़े हुए हैं रेड ब्लू कलर के।

एक ब्राउन बेड रखा हुआ जिसपे व्हाइट बेड शीट है।

इस पिक्चर में एक टेंपल जैसा दिख रहा है जिस पर बहोत ज्यादा स्टार्स से नीचे में इसमें आदमी लोग चढ़कर जा रहे हैं।

स्टेयर्स के किनारे में एक बहोत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो की सुंदर दिख रहा है जिसके पीछे में एक क्रिसमस ट्री जैसा --

और यहां पे मैगी का पैकेट दिख रहा है।

यहां पर एक गेट लगा हुआ है जिस पे ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल --

धर पे रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट भी है।

दो छोटी लड़कियां कैंडल लेके खड़ी है।

चार आदमी एक टेंट जैसा कुछ पकड़े हैं।

दर में एक पाइप भी रखा रहा हुआ है।

एक टेबल पे सॉल्ट बॉक्स जैसे भी दिख रहे है।

इधर एक छोटा सा शॉप है जो कि--

बाइक के ऊपर पर एक हेलमेट भी है।

घर में एक नीम का पेड़ है।

घर के सामने एक सुंदर सा ग्रीन कलर का घर है।

और यहां पे तीन प्लास्टिक टेबल दिख रहे--

इसमें एरियल सर्फ भी रखा हुआ है इस शॉप के अंदर मे--

जिसके बगल में एक छोटा सा घर है जिसमें बोर्ड लिखा हुआ है।

यहां में एक होटल दिख रहा है जो की ब्लू और ऑरेंज कलर का है।

में बहुत सारे फैन भी है।

इसमें ज्यादातर ओल्ड एज लोग दिख रहे हैं।